तस्वीर में एक बिल्डिंग है बड़ी सी जिसमें काफी सारे दरवाजे खिड़कियां हैं। और ये बिल्डिंग थ्री फ्लोर्स हैं।

इसके बाहर एक रोड चलता हुआ जा रहा है और एक बड़ा सा पेड़ भी है आधा नजर आ रहा है।

ये एक बड़े से घर के बाहर की है जो कि सफेद रंग से पुता हुआ है और ब्लू कलर के बॉर्डर्स लगे हुए है इसमें काफी सारे खिड़की और दरवाज़े भी है।

तस्वीर एक स्टेशन की है एक रेल पटरी भी नजर आ रही है बाहर स्टेशन पे लोहे का शेड भी बना हुआ है।

एक बडी सी बिल्डिंग है जो कि एक ही फ्लोर की है और उसमे काफी सारे दरवाजे नजर आ रहे हैं ऊपर आसमान समान है जो काफी नीला है और कुछ बादल भी नजर आ रहे हैं।

और काफी सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ नजर आ रहा है एक ए.सी. भी --

ये तस्वीर एक नाई की शॉप की नजर आ रही है जिसमें काफी सारे काँच लगे हुए हैं टेबल बनी हुई है एक।

दो चेयर्स भी लगी हुई हैं ब्लैक कलर की। यहाँ पर काफी शोकेस बने हुए हैं जिसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।

पीछे काफी सारे पेड़ पर भी नजर आ रही है बिजली का खत्म हो गई है जिसमें से काफी सारे तार निकले हैं।

क टेबल है जिसपे सफेद कपड़ा बिछा हुआ है और इस पे क्रीम कलर की शर्ट पर ये आदमी प्रेस कर रहा है पीछे अलमीरा बना है जिसमें काफी सारे कपड़े रखे हुए हैं। कुछ कपड़े नीचे भी पड़े --